और अ बगल में हरे-हरे पेड़-पौधे नजर आ रहे है और गेट में एक मोर चिड़िया भी रक अ रुका --

लोहे के बने एक फिसलन पट्टी भी बनाया गया है जिसमें जो दिखने में बहुत सुन्दर लग रहे है और कुछ बच्चे भी नजर आ और तरह-तरह के पेड़-पौधे भी --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

यह एक बहुत बड़ा सा हवेली है जो बहुत बड़े है जो दिखने में बहुत सुन्दर दिख रहे है। ये ये सफ़ेद कलर के है और उसके पीछे वाला --

सोना कलर का है और पीछे में बड़े-बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं और आगे में हरे-हरे घास नजर आ रहे हैं और छोटे-छोटे जंगल --

यह एक बहुत बड़ा सा नदी है जिसमें दो आदमी नाव ले के तैर रहा है और इसमें एक बहुत बड़ा सा पुल है।